जमीन पर रस्सियों का गुच्छा भी पड़ा हुआ दिख रहा है।

तस्वीर मे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई नजर आ रही है।

एक्सरसाइजेज की तस्वीरें बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां एक लंबी खाली सड़क भी दिखाई दे रही है।

इनमें से एक पर एक शख्स बैठा हुआ है जिसने अपने कंधों पर बैग टांग रखा है।

इनमे छोटे छोटे पौधे लगे हुए है।

यहां बिजली के कुछ खंबे भी नजर आ रहे हैं तथा--

छोटे एवं हरे भरे घास उगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

किनारे पर एक बड़ा सा टापू जैसा बना हुआ है जिसके ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं।

इनमें से कुछ पर ग्राहक बैठे हुए हैं।

इनमें से एक ने चश्मा पहन रखा है।

अलग अलग प्रकार के किताबों को सजाकर रखा हुआ दिखाई दे रहा।

कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

कार की ओर कई सारी गाड़ियां एक सफेद कलर की कार खड़ी है।

एक लोहे के खंभे पर सिल्वर स्पून बेकरी एंड कैफे का बोर्ड लगा हुआ है।

जहाँ सामने की और हमें कई सारे काउन्टर्स बने हुए दिखाई दे रहें है।

इसके ऊपर एक नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

उसके अंदर लाइटे भी जल रही है।

जिनमें से एक सफेद वाले पर त्रिवाग मेडश्योर लिखा हुआ है।

इसमें काफी स्वच्छ पानी को भरकर रखा गया है।

इंसान सामने की ओर खड़े होकर तस्वीर खींचवा रहे हैं।

पीछे की ओर एक सफेद रंग का भवन बना है।

ऊपर मां सरस्वती की तस्वीर लगी हुई दिखाई दे रही है।

ऊपर सीलिंग पर कई सारी सफेद कलर की लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

सीलिंग से एक काले रंग का डिजिटल बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

तथा उसके दोनों ओर कुर्सियां लगाई गई हैं।

पार्किंग लॉट में कई सारी गाड़ियां खड़ी है।

सफेद कलर का ए_सी भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में बड़ी सी सराब दिखाई दे रही है।

आई_टी कॉलेज लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इनमें से कुछ में फूल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं।